खंबे दिखाई दे रहे है झंडे है कुछ बालूवा दिखाई दे रही हैं ।

ये एक थिएटर है जैसे लग रहा है इसमें लोग मूवी देखने आते है।

नदी के किनारे में कुछ-कुछ पौधे दिखाई दे रहै है।

पेट्रोल डीजल वाले ट्रक है और खंभे है।